फूल पत्ती सजा हुआ हैं स --

नीचे वाले रैक पे रेड कलर का छोटा डब्बा है सबसे ऊपर वाला रैक पे बड़ा डब --

ये एक फल दुकान का पिक है.

एक डेम का पिक है.

पूरा घास उगा हुआ है मैदान में साइड साइड पेड़ पौधा है।

पार्किंग के साइड साइड ऊपर जाने का सीढी बनाया हुआ हे.

बस के सामने खाली पूरा मैदान है.

डेम में ढेर सारा पानी दिख रहा है.

मैदान में ढे घास उगा हुआ हैं घा --

घास उगा हुआ बड़ा सा मैदान है उसी में अलग अलग ड्रेस पहने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं.

एक पेड़ के साइड में अल्बेस्टर का रूम बनाकर उसमें ढेर सारा गाय बना हुआ है।

एक प्लेटफोम पे पीला कलर के बोर्ड में स्टेशन का नाम लिखा हुआ है.

बेतला राष्ट्रीय उद्यान का फोटो हैं.

पीला हरा कलर में लिखा हुआ है साइड साइड घास हे. बड़ा--

गांधी पार्क का है.

गेट के बाहर एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।

बोर्ड पे लिखा हुआ हे पलामू ढाबा ऐंड फैमेली रेस्टोरेंट .

त-तकिया है साइड में कुर्सी दिख रहा है.

एक दुकान का पिक है.

साइड में भी कुछ रेस्टरों का पिक है नेविगेट है खाली मैदान है।

और बैंक के काउंटर के पास कुछ लोग मास्क पहने खड़े हैं कुछ काम के लिए सामने में ग्रिल दिख रहा है।

प्रज्ञा केंद्र मे रेड कलर का काउंटर हे. ओ--

के ऊपर सी_एस_पी का पोस्टर है सामने में एक आदमी है.

पार्क बड़ा सा है जिसमे मिट्टी दिख रहा है छो--

छोटा छोटा पेड़ पौधा दिख रहा है।

पिलर हे मे छरी हे.

फर में भी बिल्डिंग बना हुआ है साइड बास बल्ली किया हुआ है निचे मे छरी है.

ये कहीं घर बनता हुआ का पिक है जिसमें पिलर डलाई हो रहा है।

साइड में पेड़ पौधा है.

अ गेट है गेट के अंदर भी कुछ टंगा हुआ है.

इसमें घास मैदान खाली है उसमें घास उगा हुआ है.